यहाँ पे हम देख रहे हैं यू.एच.डी कोई ऐसा सिस्टम है यहाँ पर हम को लग रहा है बाइक - उक का कोई समान मिल रहा है यहाँ पे।

जहाँ पे भीड़ भी लगा हुआ --

यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सी बी सी कुछ दुकान वुकान हैं । यहाँ पे शिवशक्ति लिखा हुआ है।

यहां पे सुलेखा जरनल स्टोर हैं।

टावर उबर तार उर इ सब --